पीछे एक फ्रिज है जिसमें बहोत सारी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई--

यह तस्वीर एक मेले की है जहां पर अनेको अनेक--

आगे बड़े बड़े पेड़ हैं इसका कलर स्किन कलर है।

जली हुई लकड़ियां भी रखी हुई।

जिन पर लोग बैठते हैं और यहां रात हो रखी है।

समुद्र की तस्वीर है जिसमें एक हाथी को नहला रहे हैं।

और यहा बुत सारे लोग दिखाई दे रहे--

कुरकुरे जैसे मसाला मंच टकाटक ये सब मिलते हैं और को--

हरे भरे पेड़ हैं उसके पीछे--

पहाड़ के ऊपर तीन छोटे छोटे मंदिर है और पीछे बड़े बड़े पेड़ है।

रेड कलर का एक बॉक्स है उसके सामने दो ऑटो हैं और ग्रीन ग्रीन बहुत सारे पेड़ हैं और--

और उनके साथ उसकी चटनी भी रखी हुई--

रेड कलर का कार्पेट बिछा हुआ--